यहां सामने वो मशीन है जो कि इसका मीटर बताती है और इसके पीछे भी रोशनी दिखाई दे रही है अभी रात का टाइम है।

इंडियन ऑयल का ऑफिस है यहां पर बारिश जैसा मौसम लग रहा है और यहां कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं और यहां पर एक जाली का एक वो बना है उसके बीचों-बीच इंडियन ऑइल का बोर्ड लगा है खंभा लग खंभा लगा --